यहाँ पर दरवाजा नजर आ रहा है। दरवाजे के पास एक आदमी खड़ा हुआ है। उसने पीले रंग का कुर्ता पेना हुआ है।

बर्थ्डै की सजावट दिखाई दे रही है। पीछे दीवार नजर आ रही है जिसका रंग सफेद है।

फर्श बिछा हुआ है जो कि लाल रंग का है। पानी के कैंपर दिखाई दे रहे हैं जिनका रंग --

दीवारों में छत में पंखे लगे हुए हैं। पंखों का रंग काला है।